एक शोरूम का दृश्य बना हुआ जहां पे काफी सारी स्कूटी नजर आ रहे हैं जिनकी कलर ब्लैक एवं व्हाइट और रेड है यहां पे नीचे के ओर टाइल्स भी लगी हुई है।

साइड में एक चेयर नजर आ रही है जिसकी कलर ब्लैक है पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन एवं व्हाइट है।

यह एक स्कूल का दृश्य बना हुआ है यहां पे काफी सारे बेंच नजर आ रहे हैं जो लकड़ी और लोहे की मदद से बनी हुई हैं।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

यहां पे तीन चार व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनके कपड़े के कलर अनेक है नीचे की ओर पक्की की गई नीचे कर को छोटे मोटे सामान भी नजर आ रहे हैं यहां पे एक लोहे के बड़ा सा सामान नजर आ रहा है जो रखा हुआ जिसकी ग्रीन एवं ब्लैक है।

यह एक दीवान पलंग का दृश्य बना हुआ है।

दीवार का ब्रेग्राउंड वाइट है।

रोड का दृश्य बना हुआ है जहां पर काफी सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनके कपड़े कलर व्हाइट एवं ब्लैक है।

यहां पे नीचे की और सड़क में पक्की की गई है साइड में कुछ करकट की मदद से खंभे की मदद से कुछ बनाए गए हैं।

जंगल का दृश्य बना हुआ है जहा पे काफी सारे हरे भरे पेड़ पौधे नजर आ रहे है जो छोटे बड़े है।

ठीक है और छोटी छोटी घास भी नजर आ रही है यहां पे एक सूखा पेड़ नजर आ रहा है इसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है।

यहां पे एक मशीन भी नजर आ रहा है जो अंदर मिट्टी के ओर के खड़े हैं नीचे की ओर मिट्टी नजर आ रही है यहां पे लोहे की मदद से कुछ रेलिंग टाइप के बनाए गए हैं।

यह एक मेडिकल का दृश्य बना हुआ है जहां पे लोहे और लकड़ी की मदद से टेबल बनी हुई है।

पीछे के ओर एक शटर नजर आ रही है जिसकी कलर ब्लू है।

पेट्रोल पंप का दृश्य बना हुआ है जहां पर चार पीलर नजर आ रहे हैं।

इसके अंदर काफी सारे सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं।

येलो है यहां पे एक चेयर नजर आ रही है जिस पे एक व्यक्ति बैठा है जिसके के कपड़े कलर रेड एवं ब्लैक है।

चेयर की कलर ब्लैक है यहां पे एक टेबल पर पानी का बोतल रखा हुआ है।

काफी सारी नजर आ रहे हैं ऊपर की ओर कुछ कार्टून में रखे हुए हैं।

यह एक सैलून का दुकान का दृश्य बना हुआ है जहां पे एक बड़ा सा चेयर लगी हुई है जो लोहे की मदद से बनी हुई है जिसकी कलर ब्लू एवं येलो है।

यहां पे काफी सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो अनेक कलर के कपड़े पहने हुए हैं।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

यह एक ग्राउंड का दृश्य बना हुआ है यहां पे नीचे के ओर टाइल्स लगे हुए हैं।

तीन चार टावर नजर आ रहे हैं आसमान के और एक सूरज नजर आ रही--